पिक्चर में काफी सारे लोग हैं जेंट्स एंड लेडीज लाइक स्टूडेंट है स्टूडेंट में से दो स्टूडेंट्स के पास फावड़ा और एंड कुदारी टाइप का कुछ--

एंड एक आदमी हाथ में छाता लिए हु खड़ा है और यह स्टूडेंट के ये स्टूडेंट्स है कॉलेज के स्टूडेंट्स है बहुत ही प्रोफेशनल्स लग रहे हैं पास में किए खेत्स और पीछे पेड़-पौधे हैं आसमांस दिख रहा है।

यह फोटो किसी के शादी का है जिसमें बड़ा-सा प्लेटफार्म है प्लेटफार्म में जहां दूल्हा-दुल्हन बैठते हैं वहां पे एक कुर्सी रखी गई है जिसमे दो भाई बैठे हुए हैं।

फोटो ये एक्सरसाइज करते हुए दो बंदो की है ग्राउंड पे एक बंदा जमीन पर लेटा हुआ है दूसरा बंदा उसकी हेल्प कर रहा है ब्लू टी शर्ट में एंड स्लीपर्स रखी हुई है पास में ही और कोट्स पेंट्स रखे हुए हैं।

फोटो में एक जेंटलमैन दिख रहें हैं जो बेड में लेटे हुए हैं उनके हाथ में एक घड़ी है राइट हैंड में एक सिंगल रिंग है लेफ्ट हैंड में तीन रिंग है।

एंड पिलो दिख रहा है तकिया दिख रहा है पीछे चार्जर्स सॉकेट दिख रहा है बटन दिख रहा है केवल दिख रहा है एंड पर्दे दिख रहे हैं।

डिफरेंट कलर में कपड़े तौलिये दिख रहे है केले के पत्ते दिख रहे है घरो के छत दिख रहे है एंड लाइटनिंग की लाइटनिंग दिख रही है बिजली के तार भी।

ये फोटो है जो किसी बैंक का है इस में एक पोस्टर लगा हुआ है एंड एक छाता टाइप का रखा हुआ है कुछ गाड़िया खड़ी हैं बैंक के ठीक सामने एक अंकल गाढ़ी में खड़े हुआ हैं ।

पिक्चर पिक्चर में काफी सारी गर्ल्स बैठी हुए हैं जोकि शांत योग आसान की अवस्था में बैठी हुए हैं जो योग आसान कर रही हैं।

--सभी ने मार्क्स पेहन के रखा हुआ हैं एंड तिरंगे को पेहन के रखा हुआ है सभी मैट पे बैठे हुए हैं एंड उन के पीछे एक बॉउंड्री है पेड़ पौधे है घर हैं।

ये फोटो मे तीन देवता दिख रहे है जिसमे भगवान बुद्ध है बगल मे दो और लोग बैठे हुए है काफी अच्छा सुषोजित किया हुआ है आस पास मे पेड़ दिख रहे है झड़िया दिख रही है आसमान दिख रहा है।

फोटो में एक घर बनता हुआ दिख रहा है जिसके ऊपर लड़की या छड़ लगा हुआ हैं अभी उस की ढलाई कर रहे है काफी सरे लोग हैं पाइप है तगाढ़ि हैं।

फोटो में भगवान बुद्ध की मूर्ति है एण्ड उनकी मूर्ति पीले कलर की हैं।

वॉल में वॉल में एक फोटो लग फोटो फ्रेम लगा हुआ है उसमें स्विच दिख रहा है सॉकेट दिख रहा है-- एंड लाइटर है फर्स दिख रह--

कुछ ठेले भी लगे हुए हैं नाव में कलरफूल झंडे दिख रहे हैं जमीन दिख रही है।